बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग में पूरी दीवाल पर ये संगमरमर के पत्थर लगाए गए हैं।

और इस होटल में लिखा हुआ है होटल माया जो बहुत बड़ी है।

और बिल्कुल साफ और सुथरी और चारों तरफ लाइटें भी लगाई गई।

और इस बुक स्टॉल का --

यह एक सरकारी भवन है।